एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे दो तीन इंसान दिख रहे हैं| वहां पे एक दो बम्बू लगे हुए हैं।

इसमें कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं | कुछ लोग अ मिट्टी डाल रहे हैं |कुछ लोग--

एक बड़ा सा ल ग्राउंड दिख रहा है| उसके पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है| बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा गेट दिख रहा है| उसके बाहर कुछ फर्श दिख रहे हैं जो कि लोग उसको उतार रहे हैं ।

जो की दिख रहा है की वो एक चदर है फूलों की चदर है।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है| वह पे टेबुल और कुर्सियां लगी हुए है।

इंसान वहां पर बैठे हुए हैं| एक आदमी वहां टेबल पर कुछ कर रहा है| दूसरा आदमी खुर्चि पर बैठा है| वहां पर आधार फाउंडेशन इंस्टॉलमेंट का पोस्टर लगा है ।

नाव के ऊपर एक इंसान खड़ा है जो की रेड कलर की शर्ट और टोपी पहना हुआ है| उसके बाजू में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सडा सा रोड दिखाई दे रहा है| उसके बाजू में बहुत सारे दुकान दिख रही है| बाजू में एक कंप्यूटर और बैंक दिखाई दे रहा है ।